यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है इस चित्र में देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई मंदिर है यहाँ पर बहोत बड़ा घंटा लगा हुआ है।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में देखने में ऐसा लग रहा है कि यह कोई सैलून है। यहाँ पर --

बैठा हुआ है। सेल्फी ले रहा है।

यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र में देखने में लग रहा है कि यह कोई स्कूल है।

मनमोहक सा लग रहा है। यहाँ पे दूर-दूर से बड़े-बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं और --

जिसमें बच्चे लोग खेल रहे हैं। कुछ लोग कसरत कर रहे हैं जिम और यहाँ पर बहोत बड़े-बड़े पेड़ हैं।

कोई बैंक है। सामने बोहोत सारे लोग लाइन में खड़े हैं और यहाँ पर बाइक है ठेला है और यहाँ पर --